मूर्ति बनी हुई है हाथी की। सामने उम् बहुत बड़ी पहाड़ी है जिसमे से से पानी गिर रहा है।

पिक्चर में लोहे की ग्रिल है और सामने में एक लाल कलर का डस्टबिन है उसके आगे एक सीडी है जो ऊपर जाने का रास्ता है।

और उसके साइड में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमे कमिंग सून लिखा हुआ है एक आदमी है जो बाइक से जा रहा है।

और एक लेडीज है जो स्पीच दे रही है खड़े होके।

एक पहाड़ है लम्बा उसके पुरे पहाड़ में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।